ये एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे है यहाँ नाईट का टाइम है।

यहाँ एक बैंक है यहाँ पर अ-ये-यहाँ पीले कलर से पुत्ता हुआ है यहाँ पर कुछ बाइके खड़ी हुई है।

यहाँ पर रेल नज़र आ रही है और कुछ रेल की पटरिया दिखाई दे रही है।

यहाँ आसमान भी नज़र आ रहा है और कुछ लाइटो के खम्बे भी नज़र आ रहे है।

यहाँ पर पत्थर नज़र आ रहा है और कुछ दूर पर एक घर दिखाई दे रहा है और कुछ दुरी पर पेड़ भी नज़र आ रहे है जमीन पे घास दिखाई दे रही है आसमान भी दिखई दे रहा है।

यहाँ पर एक रेल दिखाई दे रही है जो नीले रंग की है और आसमान भी नज़र आ रहा है जो ब्लू रंग का है यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

जो वाइट कलर की है और ये कार्यालय का कलर हल्का येल्लो कलर का है और वाइट भी पुता हुआ है और रेड कलर के इसमें पट्टे डले हुए है।

यहाँ एक मंदिर है यहाँ पर कुछ लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे है कुुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे है।

यहाँ एक पार्क है यहाँ कुछ बच्चे पार्क मे झूला-झूल रहे है और यहाँ पर कुछ पेड़ नज़र आ रहे है नीचे कुछ घास दिखाई दे रही है आसमान नजर आ रहा है।

और यहाँ एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है और पीछे भी कुछ पेड़ है यहाँ कुछ घास दिखाई दे रही हैं।

यह एक मंदिर है यहाँ पर कुछ लाइटें-टे जलती हुई दिखाई दे रही है।